ये एक डांस क्लास है यहाँ पर एक सर है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ।

और यहाँ पर टेरेस है टेरेस के ऊपर टाकी रखी हुई है ।

और इसका जो पेंट का कलर है वो वॉल में ईंट टाइप डिजाइन किया गया है और--

इस पर बोर्ड लगाया हुआ है सी_वाई_सी इलेक्ट्रिक व्हीकल और यहाँ पर जो दो ऑटोज ठहरे हुए हैं एक ब्लू कलर का ऑटो है एक ग्रीन कलर का ऑटो है।